बोहोत ही बड़ा बिल्डिंग है। यहां एक लगी हुई है। बोहोत बड़े-बड़े पोस्टरें लगी हुई हैं।

बाहर बहोत ही हरे-भरे घांसे दिखाई दे रहे हैं एक सुंदर-सा रोड है वहां बहोत सारे बाइकें खड़ी है कुछ आदमी भी खड़े हैं कुछ आदमी जा --

यह एक इस स्टोर है। यहाँ एक आदमी दिखाई दे रहा है। उस आदमी के हाथों में मोबाइल भी है। वह आदमी बैठे हुए है चेयर में। यहाँ और भी चेयरें रखी गई है। कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बोहोत सारे सामान है। कुछ डब्बें भी दिखाई दे रहे हैं। बोहोत सारे लाइटें लगी हुई है।

यहां एक बहुत बड़ी गाड़ी दिखाई दे रही है यहां गाड़ी बनाने के कुछ सामाने भी दिखाई दे रहे है यहां बहुत एक बड़ा पोस्टर भी दिखाई दे रही है यहां नीचे कुछ सामाने भी पड़ी हुई है और यहां बहुत मशीने खाली नजर आ रही है बहुत सारे लोहे की वस्तुआ रखी गई है।